आलू का रंग-बिरंग का सामन बनता हैं।

जो हसाने के लिए ले जा रहा है।

पीछे में एक काउंटर पे आदमी खड़ा है।

घांस-फूस लगा हुआ है पार्किंग में।